यहां पर रेड कलर कि चेयर दिख रही है यहां पर काले कलर कि चेयर दिख रही है यहां पर बहुत सारी चीजे दिखाय दे रही है यहां पर दो हैंड हैंडग्लूव्स दिखाय दे रहे है यहां पर ब्लू कपडा दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे अच्छी डिज़ाइन में बलब भी लगी है वहाँ वहाँ बलब बंद है यहाँ पीले कलर कि बलब है सफेद कलर कि बलब ऊपर से --